मंदिर है इसके सामने सु तालाब है इसके बगल में सफ़ेद बिल्डिंग है.

और इस पटरी पे ट्रेन खड़ी हुई है।

ट्रेन खड़ी है। इसमें पसेंजर बैठ रहे --

ये चर्च है इसके इसमें डेकोरेशन हुआ है लाइटिंग का फूलझड़ी लगी हुई है बलून लगे हुए है इसमें औरत --

इसमें बहोत ही हरी-हरी घासें दिख रही हैं अंदर जिसमें --

ऑरेंज कलर की लाइट लग हुई है बहुत ही सुंदर घर दिख रहा है इसमें अंदर --